मुझे बहोत बड़ा तालाब दिखाई दिए है यहाँ पर चारों ओर पेड़-पोधे दिखाई दे रहे है।

मुझे दुकान दिखाई दे रही है यहाँ पर बहोत सारे आदमी दिखाई दे रहे है यहाँ भट्ठे भी लगे हुए दिखाई दे रहे है यहाँ पर आदमी बैठे हुए दिखाई दे रहे है यहाँ पर गाड़ियां भी रखी हुई दिखाई दे रही है यहाँ पर केले दिखाई दे यहाँ पर सब अनार दिखाई दे यहाँ प सेब दिखाई दे यहाँ पर संतरा दिखाई दे रहे है प बहुत सारे --

ये कांच लगे हुए दिखाई दे रही है पीछे लाइटे लगी हुई दिखाई दे रही हैं यहाँ पर टी_वी चलती हुई दिखाई दे रही है।

यहाँ पे मुझे दुकाने दिखाई दे रही है यहाँ पर मुझे देव ड्राई क्लीनर्स दिखाई दे रहा है बहोत सारा सामान दिखाई दे रहा है भी पर्दे लगे हुए--

यहाँ मुझे बहोत सारा पानी दिखाई दे रहा है यहाँ पर घर दीवाल बनी हुई दिखाई दे यहाँ पर मुझे पेड़ दिखाई दे रहे है।

यहाँ पर तालाब के आसपास पानी बॉउंड्री भी बनी हुई दिखाई दे रही है यहाँ पे मुझे बहोत सारे ऊंचे-ऊंचे पेड़ दिखाई दे रहे है यहाँ पे पानी भरा हुआ भी दिखाई दे रहा है।